लड़का है जो गंजी पहन के अपना बॉडी दिखा रहा है जिम में है जिम कर रहा है पूरा बॉडी अपना सिक्स पैक दिखा रहा है ।

बस है । बस पे लोग सब चढ़ रहा है । कुछ लोग ऊपर में है। बगल में मोटर साइकिल लगल है । कार है कार के बगल में एक महिला खड़ी है ।

जी बच्चा सब खेल रहा है तीन चार गो बच्चा बैठल है।